एक गाड़ी भी खड़ी है एक लेडिज खड़ी इ है।

ये एक बेनकेट हॉल है जहाँ पे काफी सारे चेयर मिलेगी आपको एक व्हाइट में कवर है एक रेड जो सिंगल है एक रेड कुर्सी अलग से दिख रही है।

ये एक जगह है जहा पे पानी हैं ऊपर ब्रिज बना हुआ है।

रेड रेड सी घास हैं पानी है थोड़ा सा।

ग्रीन कलर का एक कपड़ा सूखा रखा है जो फटा हुआ है।

एक ने पिंक पहने एक ने ऑरेंज पहने एक ने रेड पहना हुआ है कपड़े |

काफी सारी वैरायटीज आपको आ देखने को मिल रही कपड़ों की यहाँ पे एक डमी आपको सामने दिख रही जिसने ऑरेंज कलर का सूट पेहना हुआ है।

यहां पे एक स्टील का बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है।

इस इमेज्स में आपको एक पार्किंग दिखाई दे रही है जहाँ पे काफी सारी गाड़ियाँ एंड बाइक खड़ी हुई है।

इस इमेजेस में आपको पानी दिखेगा और पानी में आपको काफी सारे अ गमले दिख रहे हैं।

इस इमेजेस में आपको एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जिसमें उरीन बैंक लिखा ऑफ इंडिया --

इमेजेस में आपको सामने ए.सी. दिख रहा होगा।

ये एक फॉर्च्यून की दुकान हैं जहां पे दो लड़के आगे खड़े और एक बुड्ढा जेन्स पीछे खड़े हुए हैं।

चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं रेड कलर के टेबल में एक मैट सा हॉफ मैट बिछा हुआ है जिसमें व्हाइट कलर के --

कलर का मैट बिछा हुआ है नीचे एक अ कपड़ा गिरा हुआ है व्हाइट कलर का।

इस इमेजेस मे एक फॉर्च्यून की दुकान आपको दिखाई दे रही हैं एक टेबल बिछा हुआ हैं |